यहां पर मंदिर का दृश्य दिख रहा है।

थाली है थाली में कुछ दिए रखे हुए है।

सामने साईं बाबा का मूर्ति का दृश्य दिख रहा है।

यहां पर बहोत सारे लोग हैं जो इधर उधर जा रहे हैं कुछ लोग डांस कर रहे--

रोड पर एक गाड़ी चल रही है टेंपो चल रहा है।

टेबल पर एक कपड़ा बिछाया हुआ है उस पर कुछ गिलास रखा हुआ है।

अगल बगल पेड़ पौधे लगाए हुए हैं।

एक आदमी है जो चल रहा है वह मुंह पे मास्क लगाया हुआ है।

शीशा में एक आदमी खड़ा है जो टी शर्ट पहना हुआ है ब्राउन कलर का और गले में हेडफोन लगाया हुआ है।

कुर्सी रखा हुआ है कुछ कुर्सी बड़ी है कुछ छोटी कुर्सी है।

पंखा लगाया हुआ है व्हाइट कलर का।

पोस्टर पर जेड_एस_एन हाई स्कूल लिखा हुआ है।

बहुत सारे लाइट लगाया हुआ है वाइट कलर का।

झंडा फहराने वाला बनाया हुआ है तीन कलर का।

यहां पर गाड़ी का दृश्य दिख रहा है।

डाला का दृश्य दिख रहा है आसमान पूरा साफ है।

सामने बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया हुआ है उस पर कुछ महिला लोग का दृश्य दिख रहा है।

यहां पर बड़ा सा फील्ड का दृश्य दिख रहा है अगल बगल बहोत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं कुछ--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

पोस्टर रेड कलर की है और अंदर में बहोत सारे रैक बनाया हुआ है।

बगल वाली दुकान में शटर लगाया हुआ है।

बहुत सारे कुर्सी रखा हुआ है टेबल रखा हुआ है कुछ छोटी कुर्सी है कुछ बड़ी कुर्सी है।

उस पे कुछ पोस्ट भी लगाए हुए हैं छोटे छोटे।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

नीचे रेक पर कुछ कार्टूंस रखे हुए हैं।

टी_वी रखा हुआ है उसपे बहुत सारे डब्बा रखा हुआ है मोवील का और तार बनाया हुआ है।

शटर लगाया हुआ है शटर ब्लू कलर का--

शटर लगाया हुआ है शटर ब्राउन कलर का है।

यहां पर पेट्रोल टंकी का दृश्य दिख रहा है।

दुकान में शटर लगाया हुआ है शटर ऑरेंज कलर का है।

एक बाइक लगाया हुआ है जो ब्लैक कलर की है।

यहां पर पंडाल का दृश्य दिख रहा है।

बहुत सारे पंडित लोग हैं जो पूजा कर रहे हैं नीचे बहुत सारे मोमबत्ती--